मैदान में फैला हुआ है कुछ छोटे छोटे बगल में किले बने हुए है तो कुछ बहुत बडे किला बना हुआ है।

और बहुत सी मेज रखी गयी हुई है और एक काले रंग की कुर्सी रखी गयी है।

और दिवारो में कुछ पीली रंग की लाइटे कुछ सफ़ेद रंग की लाइटे और भूरे रंग का बॉर्डर हुआ --

बीच में बहुत सुन्दर सुन्दर लाइटे लगा रखी गयी है और किनारे किनारे बहुत से कुर्सी और मेजे लगे हुए --

एक सब्जी बजार है जहाँ बहुत भीड़ है ऊपर --